छोटा सा रेस्टोरेंट है चारों तरफ कुर्सी रखी गई है पीले रंग की कुछ आदमी बैठे हुए है एक बड़ी सी पोस्टर लगी हुई है जो उसी साइड पे सब लोग देख रहे हैं।

पार्क के साइड पे नाव खड़ी है नाव रखी गयी है जो पीले रंग है और नीले रंग नाव है बगल में कुछ लाल रंग की सफ़ेद रंग की चारों तरफ पेड़-पौधे लगाए गए है।

जो इस पे ऊपर तार गया हुआ है काफी लंबा तार गया हुआ है पानी काफी भरा हुआ है और चौड़ी नदी है अगल-बगल घरे है और हरे रंग के पत्तियां हरे रंग के पेड़ हैं।

जो पैकेट रखे गए है जो नीले रंग के पैकेट है सामने काँच लगाई गयी है बगल में कपडे के दुकान है और झोले रखे गए है जो नीले रंग और लाल रंग के झोरे है सामने एक अ लड़का का चित्र बना हुआ है।

इस में से एक पूल बडा सा पूल है जो काफी लम्बा पूल है अगल-बगल परदे है जो सीमेन्ट के बनाए गए हैएक गाड़ी है। जिस के आईना में अगल-बगल रस्सी लपेटी गई है।

बोहोत सारी बुक्स और पेन रखे हुए है नीचे के साइड पे एक कुछ पोस्टर रखे गए है और कार्टून रखे हुए है।

ये नीचे एक बड़ा सा गेट है बटरंगी कलर का पेंट किया गया है दीवाल का रंग नीला है। एक गाड़ी है जो काले रंग की गाड़ी है दीवाल का रंग सफेद है।